कितनी अच्छी मंजिल है और ये शांति भवन है।

मंगल के बाज़ार जा और वहां से कुछ हरी मिर्ची लानी हैं।

और क्या कहते है? गोभी लेकानी है और सब्जी लेकानी है और आलू ले आएँगे यार। शाम के लि --

और ये आसमानी कलर की जिसपे सेवन कलर का वो रख रहा है सेवन लिख रहा है कितना मस्त डिजाइन है। इसका कलर कितना अ --

चल यार ये साइट देख कितनी अच्छी लग रही है तू बता कौन सी बढ़िया लग रही है।

ये जो गुलाबी वाले रखे हैं ना तीसरे नंबर की --

ये कितनी बढ़िया खेती कर ले की ना यार इसने भाई देख तो ले पत्ते गोभी की --

और ये गोभी कितनी अच्छी है हमारे लिए यार चलो गोभी ले लेते हैं इस खेत वाले से और घर पर चलकर बनाएंगे और खाएंगे।

और क्या कहते हैं सुबह सुबह जलेबी खा लो ना तुम तो भाई सारी खासी खत्म हो जाती है ये लोग बाग कहते हैं पुराने जमाने के --

भाई कितनी बढ़िया वो रखी है यार फुटबॉल चलो आओ लेते हैं इनसे फुटबॉल खेलते और यहां पूरी ड्रेस है फुटबॉल की नेक कर रहे ।